एक पुस्तक दुकान है जेठन दो झन बुढ़वा मन हे अपन पुस्तक मन ला बेचत है ए कापी बेचत है पेन बेचत है सब बेचत है और हमें पखना बटे को में आये ही और ये बन बिल पहाड़ है।

भारतीय स्टेट बेंक कर सामने गाड़ी वाला मन घूमत हे ओटो वाल मन जात हे ।

धरी धरी में गाड़ियाँ हे काला शर्ट पहनीन हे जूता पहनीन हे लाल साड़ी पहनीसे करिया साड़ी पहनीसे बुलेरो हे।

आगू दीवार हे स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस लिखाइस हे ।

सड़क हे दो झन चलत हे ऑटो थाडिसे हे नीला आसमान हे ।

सामने बुजूर्ग आदमी और सेलून हे अपन कर फोटो खिचात हे।

तिन चार झन हे ओकर नाम ल मे नी जानव का-का नाम के कि हमें अभी घूमे बर जात हे।

आदमी मन कुनकुरी करे मायाली डैम में घूमे करे जाइने हे और पठान लड़का लड़की मन है।

तिन चार जन आदमी मने गोवा का धरी में अ नाव हेे बेठे का तैयारी करत हेे।

अभी मंदिर हे तीन चार जन हे गुमत हे अउ मंदिर ल जबर सजायहीन हे मस्त दीखत हे।